पर बहोत घना जंगल जैसा--

मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे--

कई सारे लोग मशीन का यूज करते--

है जो की गोपाल गंज में--

मुझे एक इस्कूल दिख रहा हैं जो की बोहोत--

बिल्डिंग दिख रही है यह--

देखने में बहोत ही ज्यादा सुंदर लग रही--

दो ऑफिस में ही रजिस्ट्री भूमि भूखन आदि का--

ये यह देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग--

फैक्ट्री दिखाई दे रही है फैक्ट्री में एक--